कुछ लोग उम्म घाँस से उठे हुए है।

यहाँ पर उम्म एक स्टेडियम जैसा हैं।

और बहुत से पेड़-पौधे बाह रहे हैं।

और उह कुछ दुकान भी लगी--

आइड साइड में पेड़ हैं एक बड़ा सा पोस्टर हैं जिसमे कुछ लिखा हुआ हैं।